यहाँ पे लोग खरदीने के लिए आते हैं यहाँ पुरानी चीजों को एल्युमीनियम की चीज को नया करते --

ये एक महजिद है यह महजिद में बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोग महजिद में नमाज अदा करने के लिए जुम्मा पढ़ने के लिए महजिद में आते है।

यहां पर कई सारे ऑटो रिक्शा ऑटो और रिक्शा लगी हुई है।

अ यह नदी में छठ महापर्व की आराधना हो रही है बहुत सारे औरत यहां पे छठ महापर्व के लिए आए हुए हैं।